का खाना बनाना।

दिख रहे हैं।

इ तो पहाड़ी इलाका है।

नीचे सेटरिंग भी दिया है।

नेता सब बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के मंच पे।

दरवाजे पे कोई भी नहीं है।